पीछे देखो ना भगवान की मूर्तिया भी रखी हुई है प्योर चाँदी से बना हुआ जाना पड़ेगा लेना पड़ेगा हमको भी--

नीलेश चौल लिखा हुआ नीलेश के घर का सामने का है ये हम्म होटल भी है पानी गिरा हुआ है पूरा चिखखल चिखखल हो गया जगह पूरा--

ये ना कुछ बन रहा होगा पता है ये स्विमिंग पूल जैसे लग रहा है यहाँ ना कुछ बना रहै होंगे कुछ रिसोर्ट --

पीछे पूरा पंप वम्प पूरा घूम घूम के आते है न जैसे पानी में आके गिरते भक से छलांग वैसे पूरा बनाये है रोलर --

का कर्मचारी लोग होंगे उन लोग अपना काम कर रहै है मार्गदर्शक बना हुआ है मार्ग दिखा रहा होगा--

यहाँ पौधे लगाने के लिए वो बनाये होंगे ज मतलब की बनाते नि पौधे लगाने के लिए थोड़ा सा बाजू में वही लेकिन कचरा भरा हुआ है इसमें तो--

थोड़ा सा वजन-वजन बढ़ाउंगी एकाद कनी घटाउंगी थोड़ा ट्रेडमिल थोड़ा साइकिलिंग करुँगी--

जाना पड़ेगा एक दिन डोंगे में बैठने के लिए नाँव में--